मंदिर जैसा दिख रहा हैइधर में भी एक लंबा सा दिखाई पानी का--

यहां सामने मे एक लेडिज और एक जेंट्स दिखाई दे रही है और यहां पीछे में जो गेट है वहां बहुत सारा सजावट हुआ है यहां |

रेल का पटरी दिखाई दे रहा है सामने से एक ब्लू कलर के ट्रेन आ रही है इधर साइड में भी ट्रेन --

और जिराफ भी इस तरह से ये घर में कुछ --

और यहाँ पे पैर ये लोग ऊपर किए हुए हैं और यह सब लोग जींस और टी-शर्ट पहने हुए हैं यहाँ पे।

तख्ती भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े भी हैं ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी।

ये पटरी एकदम सीधा दिखाई दे रहा --